यह दृश्य में नदी दिखाई गई है। नदी के किनारे एक आदमी काले रंग के कपड़े पेहने बैठा हुआ --

फिट लाल और ग्रे कलर की गाड़ियां दिखाई गई हैं और दो आदमी चलते हुए दिखाई गए हैं|

इस तस्वीर में एक रिक्शा दिखाई दे रहा है और स्कूटी और एक काली रंग की बाइक दिखाई दे रही है। रोड पे कुछ चलते हुए आदमी दिखाई दे रहे --